अ खिड़कियों पर परदे डले हुए है सामने कुछ इंसान खड़े हुए है यहां---

पार्क दिख रहा है यहां पे बोहोत सारे फूल लगे हुए है नीचे छोटी-छोटी घास लगी हुई है।

और लोहे का यहां पे एक बहुत बड़ा खंभा बना हुआ हैं और सामने रोड पे एक इंसान चल के जा रहा हैं।

और वह डांस परफॉर्मेंस कर रहा है रेड कलर का लाल कलर का यहां पे नीचे कारपेट लगा हुआ है और पीछे बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे पूजा का कुछ काम हो रहा हैं। सब लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं।